बड़ा बड़ा पत्थल है है तीनों लड़का खड़ा है।

बहुत बड़ा पोस्टर है बहुत बड़ा बिल्डिंग है लाल कलर का कप --

बरा घर है ग्रिल है लगा हुआ है लरका है।

वो बोड लगा हुआ है लाइटिंग है।

जमीन है लाइट लगा हुआ है पेर है जमीन है।

मिस्त्री काम कर रहा है लेबर है।

वह उजला कलर का कपड़ा पाना हुआ है गमछा लपेटा हुआ है।